इस पिक्चर में एक रेस्टोरेंट दिखाया गया है।

और इस रेस्टोरेंट में एक गेट और तीन खिड़कियां भी हैं यहां पे--

और बच्चों के लिए ट्रैन भि रखी गयी है।

उसके बगल में ही एक मंडप सा सजा हुआ है।

शाम का समय हो रहा है इस समय।

फर्स्ट फ्लोर पे सबसे ऊपर में एक लाइट नजर आ रही है।

सेकंड फ्लोर में लाइट है।

और इसके चारों तरफ एक बाउंड्री का निर्मान भी करवाया गया है।

अपउम् एक्सरसाइज करते नजर आ रहे हैं।

और इस इसमें कुछ बच्चे को समान दिख रहे है।

आसमान बिल्कुल साफ़ दिखाई पड़ रहा है यहां से--

यहां एक गोलम्बर में एक झंडा सा गोल में इसका ग्रिल दिया है।

यहां पे दो महिलाएं दिखाई दे रही हैं।

और इस गार्डन में कई सारे फूल हैं।

होटल दिखाई दे रहे है।

और यहां एक गार्डन है इस होटल मे है ।

यहां चारों तरफ हरियाली दिखाई दे रही है।

वहां पे एक व्यक्ति खड़ा नजर आ रहा है जो एक--

दो घरों के ऊपर हमें ए_सी देखने को मिलता है।

और ब्लैक येलो ग्रीन का गेट भी दिखाई पड़ रहा है।

यह तस्वीर एक इंसान की है।

और उनके पीछे कई सारे किताबें भी हैं।

जहां पर दो चार मरीजे भी हमें देखने को मिल रहे है।

पीछे के साइड में खुला खुला आसमान दिखाई दे रहा है।

और पीछे में स्कूल सा कुछ बड़ा सा दिखाई पड़ रहा है।

और यहां से काफी भीड़ दिखाई दे रही है और काफी सारी गाड़िया भी यहां लगी हुई है।

जहां पर कई सारे व्यक्ति जो है योगा करने आए हैं।

कुछ खाने के सामान रखे गए हैं।

और जो सनसेट का समय है।

और हमें कुछ कुर्सियां भी दिखायी दे रही है।

आसमान बिल्कुल साफ नजर आ रहा है।

और एक महिला जो है वो हाथ में कुछफूल लिए हुए।

और इसके सामने कुछ दुकान भी दिखाई दे रहे हैं।

उसके अगल बगल कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

एक बुजुर्ग आदमी भी सामने दिखाई--

फिर भी उसमें कुछ व्यक्ति नजर आ रहे है।

टूटा-फूटा घर दिखाई दे रहा है।

और यहां प्लेटिनियम थ्री करके दुकान में शॉप में--

और उसके नीचे एक मैनेजर बैठा है।

एक घड़ी में न्यूयॉर्क का समय एक में लंदन का समय--

ब्लू और व्हाइट बैलून से ये सजे हुई हैं।

यहां एक सीडी और एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहा है।

यह तसवीर किसी योगा क्लब का है।

यह पिक्चर किसी घर काहो सकता है।

और पीछे के साइड में एक --

जिसके सामने एक टिकट दिखाई दे रहा है।

इंडियन ऑइल के पित्तरोल पंप मेंढेर सारी गाड़ियांभी हैं।

चार पांच बेंच डेस्क है ।

अअ साइड में ए_पी_जे अब्दुल कलाम की एक फोटो है।

वहां पेडॉक्टर प्रमोद कुमार ओझा का नाम भी लिखा हुआ है।

उसके सर पे एक कंघी दिखाई दे रही है।

यह तस्वीर किसी पार्क की हो सकती है।

कृष्णा सारि का दुकान द्वु अये ।

जहां पर एक व्यक्ति जो है वो खड़ा दिख रहा है।

और कुछ व्यक्ति ऐसे सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं।

पीछे में बॉल जो है वो वाइट कलर की है।

जिसका नाम मुझे साफ साफ दिख नहीं रहा है।

इसके अगल बगल में कुछ घर भीनजर आ रहे हैं।

कुछ ट्रांसफॉर्मर और कुछ कार्ड्स भी हमें देखने को मिलती हैं।

पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस नाम का--

और इसके बगल में नो पार्किंग जोन है।

और यहां चार बाइकरी लगी पड़ी है।